कलर के फ्लावर्स टंगे हुए हैं वह बहुत खूबसूरत लग रहे हैैं।

एक एक्टिवा भी खड़ी है।

यह एक शादी का सीन है।

लोगों ने फेस मास्क पेहना हुआ है।

बाइक खाली है यहां कोई नहीं है।

औरत ने हरी साड़ी पहनी हुई है।